पीछे कुछ लोहे के काउंटर है काउंटर पे भी पटाखे रहे हुए है अलग अलग प्रकार के पटाखे और डब्बे है ।

एक बडा सा काउंटर है। काउंटर के ऊपर कुछ डब्बे हैं। डब्बों के अन्दर सामान है।

ढेर सारे पटाखे एक जमीन पे ऐसे पड़े हुए हैं। पटाखो के ऊपर कुछ लड़कियों की फोटो छपी हुई है।

साथ ही में लाइटों के नीचे कुछ मकान बने हुए हैं।

एक बड़ी सी बाउंड्री के अंदर बड़ा सा घर है घर के सामने --